यह बहुत है प्यारा है ट्रक है पेट्रोल की टंकी का पेट्रोल खड़ा है पेड़ बहोत तरह तरह के है।

ये जो कि हीरो बाइक है बहुत ही बहुत ही ये बाइक उइक रखे हुए है बहुत ही प्यारा बेचाने उचाने के लिए रखा हुआ है बहुत ही प्यारा सुंदर दिख रहा है।